कांच के प्लास्टिक के और परफ्यूम्स भी रखे हुए हैं ढेर--

और सामने मुझे एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है।

पीछे एक बच्चा कार चला रहा है।

यह एक कार सर्विसिंग एरिया है।

पंखे लगे हुए हैं। सामने मुझे ब्लैक कलर की कार दिख रही है।

की बगल एक मंदिर बना हुआ है स्काई ब्लू और व्हाइट कलर का।

सामने मुझे एक दूल्हा दिख रहा है।

साइड साइड में फ्लावर्स लगे हुए है पीछे उसकी चेयर रखी हुई है गोल्डन और वाइट कलर की।

यहां मुझे एक बेडरूम दिखे रहा है जिसके वॉल टाइल्स की है पीछे मुझे एक खिड़की दिखे रही है कांच की।

साइड में रेड कलर का एक पोल है।